तीन शेड है और इसमें बोहत से चिप्स वगेरा और कुई --

और सामने की तरफ़ बोहत सी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं।

खम्बा भी है खम्बे की लाइटिंग भी है ये लड़का साइकिल चला रहा है और पीछे बहुत सी बाइक भी खड़ी हुई है एक आंटी --

हरा और नीला कलर से कुछ पुता है बीच में काले कलर का होल बना हुआ है।

नीचे अंकल खड़े हैं जो कि ब्लू धोती पहन के खड़े हुए हैं।

वो कुछ अंकल हाथ पे हाथ कांधे पे हाथ रख कर खड़े है कुछ --